कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं जोकी बहोत ही बड़े और हरे-भरे नज़र आ रहे हैं लगता हैं ये पेड़ को काटने से अच्छे--

हम देख सकते है घर के अन्दर में काफ़ी फूल और पेड़-पोधे लगाए गए है जोकि बहोत ही सुन्दर लग रहे है देखने से--